मुझे एक पुरानी किला दिख रही रही है जिसमें एक व्यक्ति एक लड़का चढ़ने की कोशिश कर रही है |

और एक सामने जो एक बाइक दिखाई दे रही है रेड कलर की सीट रेड कलर की बाइक है और कच्ची सड़के हैं।

वह अपना सीसे के सामने अपने फोन से फोटो लेते हुए दिखाई दे रहे है जो की ब्लैक कलर का जीन्स पहने हुए है।

जो कि बोतल के ढक्कन हरे है।

आ फैन लटके हुए दिखाई देरे हैं मुझे।

मुझे जिम के अन्दर कुछ लड़के दिखाई दे रहे है जो की एक लड़के जिम --

जो कि यू.पी. नंबर है सिक्स फाइव डबल बी सेवन थ्री नाइन थ्री उसकी नंबर है।

सारे मिठाइयां रखी हुई हैऔर एक वेइटिंग मशीन भी दिखाई दे रही है।

उस के पीछे में दो बॉल दिखाई दे रही है जो हरे - हरे पहाड़िया भी दिखाई दे रही है।

रोड के आगे देख रहे है उसके ऊपर दो तीन भैस है जा रही है उसके साइड में लेडीज भी दिखाई दे रही है।

और एक वो रोड के काफ़ी दूरी में एक वयक्ति साइकिल पे दिखाई दे रहे है जो की वाइट कलर की जीन्स पहनी हुए है रेड कलर की--